ये एक अस्पताल है । अस्पताल में बोहत सारे लगे हुए हैं जहां डॉक्टर खड़े हुए हैं । डॉक्टर के साथ साथ। बोहत सारे नर्स हैं स्टाफ --

एक बोहोत सुंदर नजारा है सूर्य दिख रहै है इसमें और बस्ती बनी हुई है | बस्ती में घर--

तालाब है तालाब में हरा सा दिख रहा है और रात के समय है और यहां पे सफेद आसमान और सूर्य निकल रहै है।

इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं और हरा सा दिख रहा है इसमें और इसमें सूखे पेड़ पौधे भी है।